इसमें बहुत सारे लाइन की मदद से फ्रिज और बोर्ड भी लगे हुए हैं।

एक बच्चा टोपी रेड कलर के पहने हुए है और ब्लू कलर के स्वेटर भी पहना हुआ है।

बहुत सारे स्टीकर दीवाल में चिपके हुए हैं और एक वाल फैन भी दिखाई दे रहे हैं जिसका कलर वाइट कलर का है।

यह एक नदी का दृश्य है।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

यहां पर एक रेड कलर क्रेड भी दिखाई दे रहे हैं जिसमे पेप्सी का शीशी रखा हुआ है।

यह एक रेस्टोरेंट का दृश्य है ।

लकड़ी के मदद से कुर्सी बने हुए हैं और अनेक प्रकार के दीवाल में डिजाइनिंग की गई है।

की दुर में बहोत सारे स्कॉर्पियो और कार नजर आ रहे हैं।

यहां पर बिसलेरी बोतल भी दो पड़े हुए हैं एक खड़े रखे हुए हैं।

यह एक घर का दृश्य है यहां पर एक व्यक्ति अपने हाथ में मोबाइल लिवे हुए हैं और बैग को कंधे में टंगे हुए हैं।